ए.टी.एम. के बाहर एक येलो कलर की कार खड़ी हुई है गोल्डन गोल्डन एक एक्टिवा खड़ी है व्हाइट एंड एक ब्लैक एक बाइक खड़ी हुई है दो गाड़ी --

यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है स्टेज के ऊपर एक क्रिसमस की ड्रेस में एक वो सैंटा की ड्रेस में एक सैंटा क्लॉस खड़े हुए हैं रेड कलर के कपड़ों में रेड कलर की ड्रेस है और एक गर्ल पिंक कलर एक गर्ल येल्लो कलर के कपड़ों में खड़ी है एक गर्ल व्हाइट कलर के और बाकी दूसरी गर्ल्स है।